कोई स्कूल है और स्कूल के सामने एक बैठने की जगह बनाई हैं वहाँ साइड में सीडी हैं और सामने बहुत बड़ा मैदान खेलने उस स्कूल चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे हैं।